औ काली भैंस भी दिखाई दे रही है।

और ढेर सारा लाइट भी लगाया हुआ--

बैलून चिपकाए हुआ है लाइट दिखाई दे रहा है पंखा लगाया हुआ है।

और खिड़की दिखाई दे रहा है।

दीवाल का कलर सफेद और पीला दिखाई दे रहा है।

और ढेर सारा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा हैं।

और ढेर सारा टाइल्स भी दिखाई दे रहा है।

और बहोत से व्यक्ति लोग भी दिखाई दे रहे है।

यह एक पार्किंग का दृश्य दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा घास फूस जमा हुआ है ।

य बहोत से व्यक्ति लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

दीवाल का कलर सफेद और पीला है।

टायर का दुकान दिखाई दे रहा है।

यह एक मंदिल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह एक ग्राउंड का दृश्य दिखाई दे रहा है।

गोल फुटबॉल दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

ढेर सारा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।